और यहां पर काफी सारे कपड़े रखे हुए दिखाई दे रहे हैं।

अस्पताल है और यहां पर लिखा हुआ है।

यह देखने से पता चल रहा है कि यहां पर दुकान है।

और दुकानों में काफी सारा तिलवा जैसा बना हुआ दिखाई दे रहा है।

यहाँ पर काफी सारे लोग आए हुए हैं और काफी लोग बैठे हुए नजर आ रहें हैं।

यहां पर काफी सारे तीन मंजिल का घर भी दिखाई दे रहा है और काफी ही बड़ा है।

और कुछ बैंक के सामने कुछ लिखकर टंगा हुआ दिखाई दे रहा है।

देखने से काफी ही सुंदर ये दृश्य है।

यह देखने से पता चल रहा है कि यहां पर--

यहां पर कुछ कॉपी किताब रखने वाला भी बनाया गया है।

यह देखने से पता चल रहा है कि यहां पर सादी या सगाई हो रही है।

और यहां पर एक दिखाई दे रहा है जो कि जय माल वाला टेबुल है।

देखने में तो काफी ही सुंदर है और काफी ही बड़ा है।

और यहां पर काफी सारे कुरकुरा बिस्किट --

यहीं सब रखे हुए हैं देखने में काफी सु--

और काफी ईट जोड़इया हो रही है।